मुझे इस पिक्चर में कंप्यूटर दिखाई--

मुझे इस पिक्चर में लाइट दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में फिश दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बेड दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बलून्स दिखाई दे रहे है।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

मुझे इस पिक्चर में कर्टन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में ढोलक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में रात दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में लाईट दिखाई दे र--

मुझे इस पिक्चर में रात दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में कार दिखाई दे रही है।